जिनमें टमाटर हरी मिर्ची हरा धनिया--

सामान रखा हुआ है जिसमें काले कलर की सीड्स लगी हुई हैं और--

यह एक शादी हॉल है जिसमें--

एक शेड भी बना हुआ है।

पूरे पीले फूल लगे हुए हैं।

पेट्रोल भरता हुआ बताया जा रहा है और एक गैस की टंकी भी रखी हुई है।

पेड़ पौधे नजर आ रहें हैं आगे वाला पेड़ बहोत बड़ा और घना--

एक्सरसाइज करने की अलग-अलग तरह की--

इस चित्र में फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चर्च का चित्र है।

कुछ बच्चे और उनके मम्मी पापा--

कुछ पेशेंट भी नजर आ रहे हैं पलंग पर।

इस चित्र में हमें एक आदमी--

अलग-अलग तरह की मशीनें --

रंग की बोरियां उठाकर--

यहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

बहोत सारी मशीन्स रखी हुई है अलग अलग तरह की--

अलग-अलग तरह के नमकीन भी रखे हुए हैं।

उती हुई है जिसके नीचे शटर भी लगे हुए हैं।

और ये चिंतकबरा कुत्ता खड़ा है।

जो कि लाल और पीली साड़ी पहनी है।